और जो है व्हाइट कलर का बोर्ड है। इसके व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी आपको एक जो है ब्लू कलर का आपको बोर्ड दिख दिख रहा नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ आपको जो है टाइल्स --

और इस मकान के एक लेफ्ट साइड में एक भी दिया गया है और इसके राइट साइड में मकान के इधर दूसरे फ्लैट में आपको बना हुआ है।

इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कोई एक आपको यहां पर कई कारे इसमें खड़ी हुई हैं जो की वाइट कलर की सारी इसमें आप को देखेंगे आप इसमें आप कार देखेंगे मुझे लगता है शायद यह कोई कार का शोरूम है |

इस फोटो में आप देख सकते हो कि आपको ग्राउंड दिख रहा है। ग्राउंड के बगल में आपको जो है। एक वह दीवाल भी दिख रही है। बीच में आपको कुछ बच्चे खेलते हुए वह दिख रहे हैं जोकि बीच में शायद क्रिकेट खेल रहे है।

इस फोटो मे आप देख सकते हो की प्लेग्राउन्ड बना हुआ है। इसमे पीछे आप को बिल्डिंगस दिख रही है और इसमे दिख रहा है की पेड़ भी दिख रहे है और ये जो बिल्डिंग है काफी बड़ी बनी है।

इस फोटो मे आप एक मेडिकल स्टोर देख रहे हो। मेडिकल स्टोर मे आप देखो एक आदमी खड़ा हुआ है जोकि एक ग्रीन कलर की टी शर्ट पहना हुआ है।

और ये कोई विद्यालय है या स्कूल है। बाहर आपको गेट के पास एक दाहिने हाथ पर लेडी दिख --

काफी हेवी बिल्डिंग बनी हुई हैं जिसके नीचे आपको पेड़ भी दिखाई दे रहा होगा और इसमे ये मुझे लगता फ्लैट इसमे सारे मिलते होंगे इसी वजह से काफी ये बड़ी बिल्डिंग बनी हुई हैं।

इस फोटो में आप देखिए कि आपको इसमें दो कोई छोटी-छोटी जो है। आपको दिख रहे होंगे दुकाने --

दो फ्लोर इस में बने हुए हैं और नीचे आपको जो है येलो कलर की आपको इसमे दीवाल दिख रही है और इसमे एक वेन भी वाइट कलर की खड़ी हुई है और इसमें कईं आपको खिड़कियां दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।